ऊपर की ओर एक लोहे का खंबा दिखाई दे रहा है।

दीवार व्हाइट रेड और ब्लैक कलर की दिख रही है।

बच्चों के कमर पर एक पट्टा दिख रहा है।

बोर्ड पर एक्स रे हाउस एंड इमेजिंग लिखा हुआ है।

यहां पर लड़कियों के व लड़कों के भी कपड़े हैं।